वो तरफ डेकोरेशन हो रही है और यहां पर जो है एक लैपटॉप सा भी लगा हुआ--

यह शॉप नाई की दुकान है।

एक कूलर लगा हुआ है।

यह एक खेल का मैदान है।

एक व्यक्ति साइकल खड़े करके देख रहा है।

है एक होट एक ढाबा है।

ढाबे के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई --

और बाइक खड़ी हुई है।

बाइक भी खड़ी हुई है।

बहुत चेयर कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

चे और कुछ महिलाएं जो हैं वो उधर की तरफ जा रही हैं।

पे जो है पंखे ही पंखे लगे हुए हैं।

यहां पर एक महिला और एक जो है व्यक्ति भी है।

यहां हमें किसी के घर के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमे बाहर एक व्हाइट कलर की एक्टिवा खड़ी हुई है।